सामने एक स्टेज है जिसमे बहुत शिवजी का फोटो लगा हुआ है एक सांप छपा हुआ है शिवजी छपी हु हु हुई साथ मे एक मूर्ति भी रखी हुई है बहुत सारी--

और एक बाइक जा रही है जिसपे एक आदमी बात कर रहा है जो चॉकलेटी कलर की शर्ट और जीन्स पर पेट पहनी हुई है एक लेडिज है जो डटती मारे हुए और कुछ फ्रॉक टाइप में कुर्ती पहने हुए --

सामने एक स्टेज है जिसपे बहुत सारे अ कचड़ा कागज सी डली हुई है एक साफी से डली हुई है और एक लड़की है जो डांस कर रही है।

सामने पूजा हो रही है और साइड से कुछ फू-फू फूल लगे हुए है सामने नीले पीले और लोग खड़े हुए है और दो लेडिज खड़ी हुई है ब्लू कलर की साड़ी पहने हुए।